सोफ़ा दिखाई दे रहा है ।

जहाँ चार पहिया वाहन धोई जा रही हैं। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर लिखा दिखाई दे रहा है गाड़िया दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर हाजीपुर जंक्शन लिखा दिखाई दे रहा है बाहर सड़क साइकिल रिक्शा दिखाई दे रहे है व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जहाँ अध्यापिका दिखाई दे रही हैं।

का चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ मजदूर दिखाई दे रहे है।

-- जहाँ आलू प्याज और लहसुन की बोरियाँ दिखाई दे रही है व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह एक विद्यालय का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह एक बस स्टॉप का चित्र दिखाई दे रहा है जिस पर राजनन्द गाँव एक्स्प्रेस लिखा दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही है।